मुझे सामने एक वेडिंग फंक्शन के लिए अह डेकोरेटिव हॉल दिखाई दे रहा है यहां पे चंदेश्वर सुषमा नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यह एक वेडिंग फंक्शन होने वाला है यहां पे जिसके लिए यहां पे डेकोरेशन किया गया है और यहां पे कपल का नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ऐसा --